जंगले भी बहोत सारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहोत सारे लोग भी इकठ्ठा हुए हैं और तिरंगा भी फहराया जा रहा है।

और अलग-अलग प्रकार की यहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है ।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है की यह कोई पार्लर का है। यहाँ पर--

जो की ब्लैक कलर का है और उस पे बहुत सारी कैडबरी ओरीओ बिस्कुट --

यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है लग रहा है ये कोई इंस्टीट्युशन का है यहाँ पे बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे है और --

यहाँ पे बोहोत सारे बाइके भी खड़ी हैं। दो-चार लोग दिख रहे जो कि खड़े हैं यहाँ पर और --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंस्टीट्यूशन का --

बड़ी बड़ी है जो की वो भी जालीनुमा है।

और ब्राउन और ब्लू कलर से रंगा गया है।